आजू बाजु सब ललल् लाइट के पोल हैं और वो रेल्वे स्टेशन पे लोंग का--

और पुजारी लोग हैं वहाँ पे हनुमान जी भी दिख रहे हैं लाइट दिख रही है मंडप दिख रहा है और सुंदर सा डेकोरेशन --

दरवाजे हैं यहाँ बाजू से वॉल कंपाउंड दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है आजू बाजु इलेक्ट्रिक के पोल लगे हैं।